यह साझा चूल्हा नाम का एक रेस्टोरेंट है जहाँ अ नॉन वेज और वेज दोनों खाना मिलता है यहाँ साफ-सफाई बहोत अच्छी रहती है बाहर का आ वातावरण व्यू बहुत अच्छा है कुछ लोग खड़े है ।

यहाँ सामने एक बड़ा- सा रोड दिख रहा है जिस के किनारे पे एक आदमी खड़ा हुआ है और उस के सामने एक लड़का बैठा है उस के पीछे है जिस में छोटे -छोटे सो पत्ती लगे हुए है और पेड़ है और गाड़िया है गाड़ी--